यहाँ पर मछली बेचीं जाती है।

यह एक ए.टी.एम. है इस ए.टी.एम. में पैसा उपलब्ध है ।

जोकि पचीस सो किलोमीटर लम्बा उड़ती है ।

अलग-अलग फ़ैमिली अलग-अलग जगह से आ के यहाँ पे रहते है।